बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है।

यह घर में एक बंधी हुई है यह गाय काली रंग की है।

इस होटल में रहते हैं खाना पीना भी खाते हैं और फिर इसमें एक बड़ा सा ।

यह एक होटल का दृश्य है इस होटल के टेबल पे--

यह एक कोई दुकान है इस दुकान में कई प्रकार के समाने मिलते हैं।

यहां पे पेड़-पौधे नजर आ रे हें जो बहुत हीं अच्छा सा दिखाई दे रहा है।

घूमने के लिए आते जाते रहते हैं।